यह एक नया दरवाजा है जो किसी व्यक्ति के घर के बाहर लगा है।

जहाँ पे बुलेटो कि सर्विस की जाती हैं।

यह किसी का घर है जो बहोत अच्छे वातावरण में --

और ये दुकान को बोहोत अच्छी तरीके से जमाया गया है।

जिसके ऊपर गुरुदेव बजाज लिखा हुआ है।

जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे है और लाल कलर के भी पहने हुए हैं।

जहां दूल्हा दुल्हन औंर उनके रिश्तेदार फॅमिली वाले --

जो पिलर पानी के अंदर तक बने हुए हैं।

जो मच्छियां ले रहे हैं। एक तरफ नीचे चाचा भी बैठे हुए हैं जो मच्छियों को देख रहे हैं।

यह एक बच्चों की पसंदीदा दुकान खिलौने की दुकान हैं।

यह एक जिम की फोटो है। यहाँ पे एक लड़का --

यहाँ बारिश हो चुकी है ऐसा मौसम हो रहा है। रोड गीला गीला है पूरा।

कुछ लोग मोज मस्ती कुछ कुछ लोग चीजें ले के भी खा रहे हैं।